ये रूम में सोफा और टेबल लोग रखा हुआ है।

माइक भी लगा के है।

यहां में एक रूम है जिसका वॉल व्हाइट कलर से पेंट करके है।

एक रेफ्रिजरेटर भी रखा हुआ है।

ये दुकान का आगे का पिक्चर है इसमें ब्लैक कलर का बोर्ड है जिसमें जो कि लिखा हुआ है।

और न्यू नथ ज्वैलर्स लिखने के सामने में एक आदमी भी खड़ा होके है।

में एक शॉप है जिसमें अरुणाचल हार्डवेयर स्टोर लिख के है।

घर का रूफ़ टीना से बनाया हुआ है।

बहोत सारा डॉट पेन लोग भी रख के हैं।

जिसका आगे का राइट साइड में एक छोटा सा पेड़ निकल के हैं।

ये लुक भी ओके है।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

और घर का रूफ को टीना से बनाया हुआ है।

ये वाला आईना में एक आदमी का हाथ और उसका हाथ में फोन दिखाई दे रहा है।

टेबल का ऊपर में पानी बोतल भी रखे हैं।

सी_सी_टी_वी कैमरा भी लगाया हुआ है।

लोग का दूसरा साइड में बाइसाइकिल और बहोत सारा बाइक लोग भी है।

कमरे मे श्री राम का स्टेचू भी बना के है।

और छोटा छोटा पेड़ लोग भी निकल के हैं साइड साइड में।

इसका कलर गोल्डन और ब्लैक कलर है।

सामने एक रूम है जिसका वॉल को व्हाइट कलर से पेंट करके हैं।

जगह है जिससे नीचे में स्टेशन नामता है।

दूसरा टेबल में माइक्रोस्कोप भी रखा हुआ है।